यह डाइनिंग टेबल के उपर केचप कि बोतल रखी हुइ है।

यह एक टेंट कि अंदर की पिक्चर है यह टेंट के अंदर कुछ तकिये और गद्दे रखे हुए है।

यह पिक्चर में यलो कलर की झाड़ियाँ थोड़ी दूर पर एक मुर्सी भी हैं यह पिक्चर एक कॉलेज के बाहर की पिक्चर हैं।

एक वाइट कलर का काउंटर है उसके बगल में दो स्टूल रखा हुआ है।

हाँ सामने वाइट और पिंक कलर का दो फूल खिला हुआ है एक पौधे में।

यह पिच्चर में एक दुकान है यह दुकान के अंदर साइड में कुछ ब्लैंकेट्स रखे हुए है।

हरे -भरे पेड़ -पौधे है और ये बिल्डिंग --

व्हाइट और रेड कलर से पेंट की गई हैं।

यहँ बिल्डिंग के पीछे एक हरा भरा पेड है। और ये बिल्डिंग के बगल में एक दुकान है।

बगल में एक येलो कलर की बस खड़ी है थोड़ी ही दूर पर एक बिल्डिंग --